और यहां पे असमान दिख रहा है पेंड दिख रहा है टायर दिख रहा है ग्राउंड से घेरा हुआ दिख रहा है टावर लक की तरह यहां पे टोपी पहने हुए सब दौर रहे हैं।

और पेट्रोल पंप पर लाइट बर रहे है एचपी पेट्रोल पंप है यहाँ पे पीर है।

छह पाँच लोग खड़ा है खराब है ये पंखा लगा हुआ है।

वाइट बॉल है बॉल बर रहा है यहाँ पे सबजी का दुकान है पली है रेड पली है।

और यहाँ पे लाइकी टिकट कटवा रहा है पता नहीं क्या चीज कर रहा है यहाँ पर नो पार्किंग होम ---

बहुत सारे सामान से यहाँ पे कोई भी आदमी सुमसान जगह की तरह दिख रहा है।

और ये पथल एक ब्लैक कलर है एक रेड कलर है।

और यहाँ पे पंखा चल रहा है लाइट बर रहा है।

जिम करने वाला मशीन है यह ल हाथ व कसे से जिम करने वाला सुत के जिम करना बैठ के जिम करने वाला पंखा है ए_सी लगा हुआ है शीशा लगा हुआ है।

दो आदमी वाइट शर्ट पहने एक पीला शर्ट पहने एक ब्लैक शर्ट पहने हुए सब जा रहा है।

बरकी मछली है छोटी मछली बुवारी है कमल गाट है पुठिया है किलो है तराजू है।

फ्रिज है फ्रिज में शीशा लगा हुआ फ्रिज में बॉल बर रहा है।

बहुत सारे कपड़ा है से बहुत सारे इसमें से रेड कलर है हरा कलर है पीला कलर है।

पार्क है पार्क में बहुत सारा फूल है यहाँ पे आदमी सब बैठे हुए टेबल पे यहाँ पे हरा पेड पौधा है।

पार्क में बहुत सारा फूल है आसमान दिख रहा है धुंधला कलर के दिख रहा है और एकदम सारा आदमी से यहाँ पे बहुत सारे लोग से है।

आसमान का रंग नीला दिख रहा है पेर पर धुनधला लग रहा है पानी में कुछ छीटा हुआ पता नहीं क्या चीज छीटे हुए---

यहाँ पर बाहर से अंदर हवा खींचने वाला लाइट लगा हुआ है घर है घर में पेंट है शीशा सब लगा हुआ है घर में----

गमला है गमला के अंदर फूल है एक चार चका है।

एक साइकिल लगा हुआ है और वहाँ पर दो अंकल की बात करें आपस में ऊपर-------

एक पेर पता दिख रहा है और यहाँ पे एक भी बच्चा नहीं पढ़ने आए स्कूल में बहुत सारे लोग यहाँ पे है।